जिस पे भातखण्डे संगीत संस्थान समविश्वविद्यालय लिखा है।

तथा इसके बगल में एक ग्रीन कलर की टॉवल भी रखी गई।

इसके ऊपर श्री श्री राधा रमण बिहारी जी--

यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट के अंदर का है।

यहां पर काफी सारे कॉपीज एंड पेंस रखे दिख रहे हैं।

नदी के किनारों पर बहोत सारे पेड़े नजर आ रहे हैं।

यहां पर सीढ़ियां नज़र आ रही हैं जिनकी रेलिंग स्टील की लगी हुई है।

यह पिक्चर किसी कार पार्किंग की है।

इसकी सारी खिड़कियां ब्राउन कलर की पेंटेड हैं।

यह तस्वीर लखनऊ की अंबेडकर मेमोरियल पार्क की है।

यहां काफी सारे एक लाइन से वुडन टेबल एवं चेयर्स लगे हुए हैं।

यहां कुछ व्यक्ति बैठे हुए भी दिख रहे है।

इस तस्वीर मे सामने मेला नजर आ रहा है।

यहां कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

जिसकी पूरी फर्श मार्बल की बनी हुई दिख रही है।

इसके पीछे एक वाइट कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके सीसे ब्लू कलर के दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में सामने एक सलून दिख रही है।

जो कि पिंक और ग्रीन कलर की पेंटेड है।

यहां पर एक व्यक्ति खड़े नजर आ रहे हैं।

जिसपे पे एक ऐ_सी लगा दिख रहा है।

तथा यहां की सीलिंग पर लाइटें लगी हुई है।

इस ग्राउंड में छोटी छोटी घासे भी उगी हुई हैं।

यहां पर काफी सारे टेबल एवं चेयर्स लगे हुए हैं।

यहां सामने दो टू व्हीलर्स लगे हुए हैं।

यह तस्वीर मेट्रो के अंदर की है।

तथा ऊपर में बलून से सजावट की गई है।

यहां रेड एंड व्हाइट कलर की लाइट दिख रही है।

इसके ऊपर ब्लैक कलर की ट्रे में चार चिकन लेग पीस दिख रहे हैं।

इस कार के ऊपर वाले सीलिंग में काफी सारी लाइटे लगी हुई हैं।

इसके ऊपर निशुल्क परामर्श केंद्र लिखा है।

यहां पर सी_सी_टी_वी कैमरे भी लगे हुए दिख रहे हैं।